एक जो सफेद रंग का है और जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक टर्निंग क्रॉस दिखाई पड़ रहा है और लाल रंग के दो हैं।

जो बहोत ही बूढ़ा तो नहीं हुआ हैऔर बहोत सी कुर्सी नज़र आ रही है उन्हीं कुर्सी पे लोग बेठे हुए है।

यह एक तालाब का दृश्य है जिस मे लोग नहा धो सकते है पर यहाँ पर का पानी गंदा है।

यह कोई प्रशासनिक भवन है जो तीन मंजिल का बना हुआ है।

यहाँ पर हमें कोई दरवाजे में अन्डरी लेड का जैसा कुछ लिखा हुआ है इसके नीचे होट लौंडरी --